इस तस्वीर मे कंट्रक्शन का काम चल रहा है।

ये तर- तस्वीर एक सड़क की नजर आ रही है इसमे बहुत सारे टेंट्स भी लगे हुए है बहुत सारे फूल भी नजर आ रहे है सामने कुछ लोग भी खड़े हुए है।

उस डब्बे मे कूछ सब मे सामान रखा हुआ है यहाँ पे कुछ पौधे नजर आ रहे है सामने कुछ मिट्टी भी नजर आ रही है सामने एक लेडीस का वेअर नजर --

ऊपर एक फूल की टोकरी भी नजर आ रही है जिसमें पीछे ए_सी लगा हुआ है बाजु में एक बॉक्स भी रखा हुआ है नीचे कुछ कारपेट बिछे हुए है पीछे दीवार भी है।

इस तसवीर बडा पार्टी हॉल दिख रहा है इसमे उपर बहुत सारे एसीया भी लगी हुए है नीचे बहुत सारे चेअर लगे हुए है।